आसमान है गमछा है खम्बा है।

मैगी है चाय है पानी बॉटल है।

घर है शटर है दुकान है पाइप है खिड़की है सिंटेक्स है पेड़ है।

चैनल गेट है घांस है लोग है।

रस्सी है बैनर है कुर्सी है टेबल है बिस्किट है पौधे है।

कुआं है पेड़ है।